ये शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखती हैं।

जिससे लोगों को अत्यधिक सुब्धा होती है। इसके द्वारा मच्छपालन भी किया जाता है।